चावल बेग भी दिखाई मील रहा है।

यहां मुझे एक रूम दिखाएं मिल रहा है रूम के अंदर सोफा सेट और टेबल भी रखा गया है।

टेबल के ऊपर बहुत सारे प्लेट भी रखा गया है।

घड़ी भी लगाया गया है।

मंदिर के बाहर में बहुत सारे कैंडल भी जलाए गए हैं।

कान के अंदर बहुत सारे चीज रखे हुए हैं।

बहुत सारा लाइट बल्ब भी लगाया हुआ है।

कुम्फू के ड्रेस भी पहने हुए है।

फैन भी लगाया गया है।

बाइक भी देखने को मिल रहा है।

और पंप दिखाई मिल रहा है।